ये एक मंदिर है जो की सार्वजनिक बजरंगबली के मंदिर के नाम से जाना जाता है क्यूकी यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जिसमे ये लिखा है के सार्वजनिक बजरंगबली मंदिर है।